पीछे एक बड़ा सा घर है।

दीवार पर गुलाबी और बैंगनी रंग का पेंट किया गया है।

और पीछे टावर भी खड़े हैं और कुछ उनका और कुछ टंगे कपड़े भी हैं घर के सामने।

और इमारत को सहारा दिलाने के लिए के खंभे बनाए जा रहे हैं।

कई तरह के आभूषण दिख रहे हैं।

दुकान के ऊपर माला मोती स्फटिक भार लिखा हुआ है।

और साइड में फोटो है फोटो के साथ में माला भी टंगा हुआ है।

और कुछ लोग बैठे हुए भी हैं।

इसके ऊपर शिवाय हॉस्पिटल बोर्ड लगा हुआ है उसमें लिखा है चौबीस घंटे इमरजेंसी सुविधा।